दो बसें पीली कलर की खड़ी हैं।

गमलों में लगे एक साथ रखे हुए हैं।

ये एक लाइब्रेरी की पिक्चर लग रही है।

ये एक शॉपिंग मॉल लग रहा है।

जहां पे बोहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है। सबसे फ्रंट पे हमारे --

एक राख है शीशे से बनी हुई।

ये पिक्चर एक अपार्टमेंट की है।

इसके जस्ट पीछे बहोत सारी बिल्डिंगों वाली इमारत दिख रही है।

सेपरेट रहते हैं और बाहर एक पार्क बना हुआ है जिसपे चेयर रखी हुई हैं।

जहां पे अ डॉक्टर का जो आला होता है उसके बारे में लिखा हुआ है।

खूब बड़े गेट हैं आने जाने के लिए एक छोटा गेट --

ये एक रेस्टोरेंट का अ इमेज लग रहा है।

टेबल पे काली अ ट्रे रखने वाली मैट है उसपे स्पून रखा हुआ है।

यहां पे एक मंजिला इमारत है।

जिनपे लाल कलर की छत है।

नीचे ब्लू कलर की बहुत सुंदर सी मैट बिछी हुई है। व्हाइट कलर की डिजाइन से बनी हुई।

जीने बने हुए हैं जो की पत्थर पर ही उकेले गए हैं।

जो की एक डैम की तरीके से लग रहा है।

बेचने वाले मछलीया लेके बैठे हैं।

ये एक पार्क या गार्डन का सीन है।

आर बिल्डिंग अभी आधी अधूरी है काम चल रहा है।

जहां पे लोहे की रैक में बहोत ही सुंदर तरीके से किताबें सजाई हुई रखी हुई हैं।

और अभी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हुआ--

और एक साइड पे सामने देखते हैं तो सामने बिल्डिंग बनी हुई हैं।

बाहर तीन गमले रखे हुए हैं व्हाइट कलर --

और अब पीछे खिड़की है।

ये छीट्टी फ्लावर दार पर्दा लगा हुआ है।

ये किसी इस इंस्टिट्यूट का कॉन्फ्रेंस हॉल लग रहा है।

बाहर व्हाइट कलर की लाइट लगी है।

इस पिक्चर को देख के ऐसा लग रहा है या तो यह मेट्रो स्टेशन है।